जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक बैंक हैं जिसका नाम सिंडिकेट बैंक ए । ये अकबरपुर पट्टी की शाखा का ब्रांच हैं। यहाँ पर सफेद दीवाल है।

सफेद कलर की बनियाइन पेहनी हुई है। एक मज़दूर बिना बनियाइन के हैं उसने भूरी कलर की कमीज़ पहनी हुई है। यहां प --

आदमी खड़े हुए हैं जिन्होंने सफेद कलर की कमीज़ पहनी हुई है एक ने काले रंग की पैंट तथा दुसरे ने नीले रंग की --

जैसे की मैं देख पा रही हूँ। यहां पर मुझे बहोत सुन्दर सी पेंटिंग दिखाई पड़ती है।

एक फूल किसी ने हाथो में पकड़ रखा हैं ये फूलों का एक बंच हैं।

लोहे का पिलर खड़ा हुआ हैं। पानी काफी दूर तक बहता हुआ दिखाई दे रहा है तथा एक --

सड़क सफेद दिखाई देती हैं। एक स्विमिंग पूल का हैं। जिस पर पानी नहीं दिखाई देता। यहाँ की दीवारे आसमानी पीली --

पीले रंग के छोटे छोटे पौधे दिखाई देत्ते है यहाँ पर बहोत सारी कार खड़ी हुईं है जोकि पीली सफेद लाल और काली है।

लाल कलर के साडी तथा पीले कलर का ब्लाउज़ पहना हुआ हैं। उसके हाथों पर लाल रंग की चूड़ियां भी हैं।

जैसा कि में देख पा रही हूँ यह कोई जगह है जहाँ पर खूब सारी कुर्सियां पड़ी हुई हैं यहां पर एक आदमी दिखाई पड़ता है जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए --